जहाँ पर दो तीन गाड़ियां पार्क भी है और लास्ट की ओर कुछ बाइक्स भी खड़ी है।

यह कोचिंग क्लास हैं जहाॅं पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और इसका नाम विजन क्लासेस हैं।

बहुत ही अच्छी बनाई हुई है यह बहुत साफ-सुथरा भी है यह खतूम मुक्तेश्वर बागरपुर जिला जौनपुर में पड़ता है।

डी.ए. एम. आई.टी.आई. एन.सी.वी.टी. एंड डी.जी.ई.टी. से मान्यता प्राप्त --